लिखा हुआ है ऊपर मे और यह आई.सी.यू. का बैंक उंक कुछ है दिया मिल्क उल्क कुछ होगा।

बोहोत यहाँ पे बोहोत सुंदर लगता है जहां पे एक माहान व्यक्ति का--